यह मोब पिक्चर है और बहोत लोग यहां पे खड़े पाए जा रहे हैं ये देख लीजिए आप सब बहोत अच्छी पिक्चर है।

यह तस्वीर एक जू की है। यहां पे दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

यह लड़कियों की ड्रेस लग रही है।

यहां पे बहोत ही टेबले और चेयरे पड़ रखी है।

यहां पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है।

जो बार्बीक्यूनेशन चंडीगढ़ में है।

यहां पे यह बहुत सुंदर तस्वीर लग रही है और साथ में एक पेड़ भी है।

यह एक नेचुरल तस्वीर है इसके बगल में बहोत से फूल दिख रहे है इसके बगल में एक घर भी दिख रहा --

वो तस्वीर एक सुंदर घर की है इसके बगल में एक मंदिर भी है।